बोट है। बोट में दो लोग खड़े हुए हैं। हाथ उठाकर वो उसके सामने सू सूरज है है नीचे तालाब है । उम्म तालाब में सूरज दिख रहा --

यहाँ पे एक लड़का भूरा कलर का जैकेट और ब्लू कलर का जीन्स भूरा कलर का जूता पहन कर खड़ा है उसके पीछे एक रेस्ट्रॉन्ट जिसका नाम है द सिटी --